बगल में ढेर सारा बोल्डर रखा हुआ हैं पहाड़ वाला।

सामने टाइल्स लगा हुआ है कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

झाड़ी भी है पीछे और भी ढेर सारा पत्थर है एक गाड़ी जा रहा है।

जो किसी के सेलिब्रेशन में फूटाया जाता है।

ज़ायका स्नैक्स के बगल में एक फ्रिज है कोको कोला लिखा हुआ है।

पोस्टर वगैरह लगा हुआ है।

बगल में ढेर सारा डबरी रखा हुआ है पीछे एक पोस्टर दो पोस्टर लगा हुआ है ।

बैलून लगा हुआ है जिसमें लाल पीला--

बगल में एक घर बना हुआ है।

और भी माता रानी का मूर्ति है जहां पर नाव में भी एक मूर्ति है।

बगल में ढेर सारा आदमी देख रहा यह--

ढेर सारे गद्देदार कुर्सियां लगी हुई है।

ऊपर में बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है।